और वह महासागर में जाता है और नहरें हमारे खेतों के लिए सिंचाई का काम करती हैं।

यह एक रोड है और रोड के किनारे एक बाइक खड़ी है जो हीरो हौंडा है और सामने एक स्कूटी खड़ी है और --

बहोत सारे पेड़ लग रहे है पेड़ पौधे है और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते है और साइड में एक--